और पीला कलर के नाव है। एगो ड्राइव कर रहे है और एक खड़े है।

और स्कूल के आगे गे --

इसको आप घर में लगा दीजिए --

सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं।

मतलब गोल ऊपर गुम्बज और पेड़ भी है। एक इसके आगे एक चित्र भी है।

यानि ज जमीन है। कोई किसी का और पूरा बॉउंड्री दिलवाया है।

ल पीला दो-दो बस लगी हुई हैं।

यह ब्यूटी पार्लर है।

और ये स्कूल है ये स्कूल में प्रार्थना हो रहा है। सफेद-सफेद कलर सब पहने हुए हैं।

आ ई शोरूम है बाइक का। मतलब यहाँ बाइक वो निकलवाया जाता है नया।

इस मकान दो ताला है। पीला कलर का दिख रहा है।